बस पेट्रोल भरती है ।

अंदर में एक फोर व्हीलर भी खड़ी है।

ई बड़ा सा डैम है। बहुत सारा पानी है।

इस स्क्रैच विस्क्रच मिटा रहे है रंग मार्क में--

और नदी के दोनों साइड --

और शाम के टाइम देखने का बहुत अच्छा नजारा भी है।